हरा कलर का और पिला में किया हुआ है ऊपर से बादल छाया हुआ है।

एक लंबा पाइप हुआ है रैलिंग है लोहा का।

गलियारी है नीचे में तीन खिड़की है एक दरवाजा है।

एक व्यक्ति आसमानी कलर का टी शर्ट पहना है और जींस पहना है।

पानी साफ सुथरा है पत्थर इधर से उधर है पानी में हो गया है।

मस्जिद के बाद ढेर सारे व्यक्ति खड़े है और बैठे हुए हैं बाइक लगा हुआ है।

फूल लगा हुआ है हरा हरा कलर --

ऑफिस के अंदर एक गेट खुला है और व्हाइट एक खिड़की है और मैरून कलर से पेंट हुआ है।

आगे में आता है लगा हुआ है।

हेलीकॉप्टर रखा हुआ है यहां कूलर है और एक प्रकार का ऊपर से पंखा है।

दो पंखा लगा हुआ है हर एक प्रकार का सामान मिलता है और एक बोर्ड लगा हुआ है।

पीला रेलिंग जइसन है ऊपर में।